बड़ा सा बेड दिखाय दे सकता हे जिसपे ब्लू कलर की कारपेट जेसा कुछ बिछाया गया हे चादर भी रखा गया हे अगल बगल कुछ ब्लू कलर ब्लू जैसे दिखाय दे रहा हे जिसपे सफ़ेद कलर से कुछ दिखे कुछ लिखा गया हे।